inkscape में create patterns पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न प्रयोग करके patterns को बनाना सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
अब inkscape खोलते हैं
star tool पर click करें और canvas में star बनाएं
अब selector tool पर click करें
tool controls bar पर width और height पैरामीटर को 40 करें
zoom इन करें और एक बार star पर click करें
देखें कि pivot point अब दिखता है यह star object के centre में plus आकृति है
यहाँ दिखाए गए की तरह pivot point पर click करें और इसे star से दूर ले जाएँ
अब edit menu पर जाएँ clone पर और फिर create tiled clones पर click करें
एक dialog box खुलता है आपको प्रत्येक टैब में अनेक tabs और अनेक विकल्प मिल सकते हैं
symmetry टैब में भिन्न methods के साथ हम एक dropdown देख सकते हैं इस प्रदर्शन के लिए हम simple translation विकल्प चुनेंगे
rows और columns parameters को बदलकर क्रमशः 1 और 40 करें
आगे shift टैब पर जाएँ यहाँ दिखाए गए की तरह per column में shift x parameter की percentage100 करें
आगे rotation टैब पर जाएँ per column में angle को 10 करें
अब create button पर click करें देखें star के साथ एक वृत्त बनता है
उसी तरह आप अनेक सुन्दर patterns बनाने के लिए create tiled clones में अन्य विकल्पों को प्रयोग कर सकते हैं
अब इस star वृत्त को एक तरफ रखते हैं
आगे हम सीखेंगे कि path के साथ pattern कैसे बनाते हैं
rectangle tool चुनें और एक गोलाकार आयत बनाएं इस पर हरा रंग करें फिर selector tool पर click करें
tool controls bar पर width को 540 और height को 250 करें
आगे star tool प्रयोग करके star pattern बनाएं
selector tool पर click करें tool controls bar पर width और height को 50 करें
इसे आयत के ऊपरी बाएं border पर रखें
दोनों आकृतियों को चुनें extensions menu पर जाएँ
generate from path पर और फिर pattern along path पर click करें
copies of the patterns विकल्प को repeated करें और deformation type विकल्प को ribbon करें
apply button पर और close button पर click करें देखें आयत के border के चारों तरफ एक सुन्दर pattern button गया है
अब path effects प्रयोग करके एक अन्य pattern बनाते हैं
bezier tool चुनें और एक wavy path बनाएं
path menu पर जाएँ path effects editor पर click करें एक dialog box खुलता है
apply new effect drop down menu पर click करें देखें यहाँ अनेक effects सूचीबद्ध हैं
add मैं gears चुनती हूँ और फिर add पर click करती हूँ आकृति में बदलाव को देखें
आगे sketch चुनें और add button पर click करें इफ़ेक्ट को देखें
path effect editor में आपको वर्तमान effect से सम्बंधित भिन्न parameters मिल सकते हैं
इसमें से किसी एक को मानिये strokes को बदलते हैं इसे 10 करते हैं और enter दबाते हैं object में बदलाव को देखें
अब path effect editor dialog box को बंद करते हैं
सारी आकृतियों को चुनें और इसे एक तरफ ले जाएँ
आगे हम spray tool प्रयोग करके एक tree pattern बनाना सीखेंगे
bezier tool प्रयोग करें दिखाए गए की तरह एक पेड़ का now बनाएं और इसे भूरा रंग करें अब एक पत्ती बनाएं और इसे हरा रंग करें
spray tool चुनें और पत्ती की आकृति पर click करें
अब पेड़ बनाने के लिए mouse को बिना छोड़े तने के चारों तरफ खीचें
देखें कि एक पेड़ की आकृति बनती है
इस tutorial के लिए इतना ही इसे सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने निम्न प्रयोग करके patterns बनाना सीखा
एक नियत कार्य में एक गोल और रंगबिरंगा pattern बनाएं
आपका पूर्ण नियत कार्य इस प्रकार दिखना चाहिए
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे देखें
spoken tutorial project team spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है और online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र देती है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
हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं आई आई we बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद